यहाँ सभी आते है एन्जॉय करते है जल जहाज चलाते है और कोट भी पहने हुए है।

आते है पढ़ाई करते है और मेडिकल करते है ।